फोटो में एक हरे कलर का मकान दिखाई दे रहा है जिसपे कार्यालय अधिकारी अधिमेंस लिखा नजर आ रहा है जिसमे लम्बी झाड़ियों वाले पेड़ है लगे दिखाई दे रहे है।

ऐ उसकी बिल्डिंग पिंक कलर से ऐ कलर की गई नज़र आ रही है।

अ इसमे पाँच छ खिड़किया लगी दिखाई दे रही है जहा पीछे आसमान भी नजर आ रहा है।